यह एक किराने की दुकान है यहा पे किराणे की दुकान मे बहुत सा समान रखा हुआ है रेड कॉलर का एक टप भी रखा हुआ है और बहुत से पाकेट नजर आ रहा है।

सर पे हेट लगा हुआ है और यहां उनके टी-शर्ट का कलर ब्लू है पैंट का कलर येलो है दो एक उंकल ब्लू कॉलर --

ये हॉल के ये होल के बाहर का फोटो है यहां पे एक अंकल ब्लू कलर का कोट पेन्ट पहन के खड़े हुए हैं और एंटी ब्लू कलर पिंक कलर की साड़ी पहन के खड़ी हुई है।

सडक पे एक ओटो खड़ा हुआ है ऑटो येलो कलर का हैऔर ओटो के अंदर बहुत सा सामान है और उसमे ओ खंभे भि लगे हुए है और टीन का शेड भि डाला हुआ है ओर उसपे ऑरेंग कलर का भि सामान रखा हुआ है।

यह एक तालाब है तालब में एक कश्ती है कश्ती में बहुत से लोग बैठे है कश्ती येल्लो व्हाइट और ग्रेन कलर की कश्ती है और तालब में बहुत सारा पानी भरा हुआ--

यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए है बहुत से टोपी लगा के बैठे हुए है और एक ब्लैक कलर की छत्री भी लगी हुई है और यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिग है।